पिक्चर दिख रही है इसमें बहुत सारे पेड़ है बहुत सारे मकान बनी हुई है ।

और अ सामने नीचे एक गाड़ अ कार पार्किंग की हुई है।

के एडवर्टाइजमेन्ट बोर्ड लगी हुई है।

और ये चारो तरफ अ से पेड़-पोधो दे घिरा हुआ है।

एक अ नदी अ नज़र आ रही है नदी के किनारे पे --